यह चित्र एक जगह का है जहाँ काफी सारे लोग दो लड़के खड़े होकर नाहा रहे हैं नदी में पानी हरे रंग का दिख रहा है।

ये चित्र एक जगह का है जहां काफी सारे भीड़ लगाके लोग खड़े हैं ।

यह चित्र एक जगह का है जहां छत ढलती हुई नज़र आ रही है| लोहा उसके ऊपर बांध रहे हैं आदमी बैठ कर उनके हेलमेट लगा हे ।

ये चित्र एक रोड का दिख रहा है जो पूरा खुदा पड़ा हैंपीछे की ओर दुकाने दिखाई दे रही है जहा कुछ लोग बैठे हुए है।

ये चित्र एक रोड का दिख रहा है जहाँ एक पीछे घर दिख रहा है उसमें कांच दिख रहे हैं।